यहाँ पे काफी सारे पेड़-पौधे भी दिखाई देते हैं। यह जगह काफी हरा भरा है। यहाँ पे बहोत सारे आदमी आते हैं घूमते फिरते हैं।

यह एक जंगल है। यह जंगल बोहोत ही घना है। यह जंगल में बोहोत सारे आदमी यहाँ पे घूमने -फिरने के लिए आते हैं। यहाँ पे गायबैलबकरी पालतू जानवर --

यह एक फर्नीचर की दुकान है। इस दुकान में बोहोत सारे सोफ़ा टेबुल कुर्सी --

पहाड़ में आए हुए हैं। यहाँ पे लोगों की काफी भीड़ लगी हुई रहती हैं। यहाँ पे बोहोत बड़े-बड़े पत्थर हैं बोहोत बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं। काफी हरा-भरा भी दिखाई --